एक परी है झंडा रखे हुए हैं लड़का कौन है उसमें दो-तीन लोग हैं घड़ी लगा हुआ है दुकान में।

यहाँ कुछ लोग आलू बड़े खरीद रहे हैं लाल पट्टियाँ पुती हुई हैं डस्ट्बिन है जाली लगी हुई है नीचे टाइल्स लगी हुई हैं हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं धूप दिख रही है पंख दिख रहा है.